यह एक चित्र है और इस चित्र में एक पिंजरा दिखाई दे रहा है इस पिंजरा के अंदर --

यहाँ एक चित्र है और इस चित्र में एक सिनेमा घर दिखाई दे रहा है यह सिनेमा घर का नाम वेलकम टू --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक बहौत ही सुन्दर मूर्ति दिखाई दे रही है।

सोप और भी कई सारे वस्तुएँ रखे हुए --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक नदी दिखाई दे रही है यह नदी बिलकुल साफ है और यह बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रही है।

बहुत ही पतली एवं लम्बा दिखाई दे रही है नदी के दोनों छोर पे कई सारे पहाड़ हैं और पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं।

यह पौधे हरे रंग की है और बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रही है।

इस बगीचे मे कई सारे बड़े बड़े पेड़ हैं और कुछ लोग ऊपर की और सीढ़ी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग --

नदी के दोनों छोर पे हरे हरे वृक्ष लगाए गए हैं।

इस बाँध के ऊपर कई सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग --

यह एक चित्र है और इस चित्र में लड़का दिखाई दे रहा है वह अपने हाथो में फ़ोन लिया हुए अपनी फ़ोन की कमरा से --

यह एक चित्र है और इस चित्र मे एक --